बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो की एक पीले कलर की शर्ट पहने हैं ब्लू कलर की शर्ट पहने है और काले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमको बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं । पीले कलर के हैं और एक तो पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं देखने में बहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं ।

व्यक्तियों ने उजले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उजले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जोकि ग्रीन कलर के है।

इस इमेज में हमको एक हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं किसी व्यक्ति की उजली कलर की और पीछे पीली कलर का पर्दा लगा हुआ है।

एक बाइक पर आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसने पिंक कलर की शर्ट पहने हुए है और एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है दो बाइक है ।

इस इमेज में हमें बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो उज्जले कलर में दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जोकि रेड कलर का बैग टांगे हुए है। एक व्यक्ति जो फोटो खींच रहा है।

इस इमेज में हमको बोहोत सारी बुक दिखाई दे रही हैं जो रखी हुई हैं। अलग-अलग कलर में दिखाई दे रही हैं। एक महिला दिखाई दे रही है। उसका हाथ जिस जो ब्लू कलर की ट- शर्ट पहने हुए है।